ये मैदान का सीन नजर आ रहा है| ये मैदान काफी बड़ा नजर आ रहा है| इसके चारो और बड़े-बड़े मकान बने हुए हैं इसके बीच में एक रास्ता बना हुआ है।

ये एक पार्क सीन नजर आ रहा है| ये पार्क काफी सुंदर है| इस पार्क के चारो और रेल की जाली लगी हुई है| यहाँ पर बोहत सारे प फूल-पौधे लगे हुए हैं।